इस चित्र मे हमे एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है यह दुकान पीछे दूर तक दिख रही है। इसकी दुकान की छत पर लाइट्स लगी है ये दुकान काफी अंदर तक गहरी है।

यहा पर एक व्यक्ति बैठा है यह एक व्यायाम शाला है जहा पर यह कसरत करने आया होगा बीचो बीच मे एक रस्सी खुली हुयी प --

इस चित्र में हमे एक खाली खेत नजर आ रहा है खाली जमीन काली मिट्टी-काली मिट्टी की है और इसके किनारे किनारे कुछ हरी भरी छोटे-छोटे पौधे लगे है।